यह दृश्य एक गराज का है जहां पर गाड़ियां ठीक होने के लिए आती हैं।

गाड़ी के सामने की लाइट जल रही है।

यहां पर हम एक आर्किटेक्ट देख सकते हैं जो की बिल्डिंग का नक्शा तैयार करते हैं।

ये दृश्य एक पार्क का है जहां पे एक व्यक्ति घूमने के लिए आया है अपने दोस्त के साथ।

वहा पे बगल में उसका लाल कलर का हेल्मेट रखा हुआ है और उसके पीछे की तरफ एक फव्वारा है जिसमें पानी नही निकल रहा है।

बीच में देखा जाए तो वहां पर गणेश जी की मूर्तियां जो की बहुत पुरानी दिख रही है।

लेकिन पानी के बगल में पत्थर लगे हुए हैं और उसके पीछे की तरफ हरियाली ही हरियाली हमको दिख रहे।

ये दृश्य वलसार में स्थित एक मंदिर का है समय दिन का हो रहा है इसलिए मंदिर के द्वार बंद हैं।

ये रेस्टोरेंट बहोत सुंदर दिख रहा है सामने की तरफ बैलूंस लगे हुए है।

सामने एक पिक्चर है पिक्चर के बगल में कुछलोग बैठ के खाना खा रहे हैं उनके सर के ऊपर एक ए_सी लगा हुआ है।

दिखने में रेस्टोरेंट बहुत सुंदर और साफ सुथरा दिख रहा है।

सफेद कलर का दिख रहा है लेकिन इसकी जो कारीगिरी है वो बहुत उमदा उसकी है।

यह दृश्य श्री एस देसाई जी का है जो की पेशे से एक डॉक्टर है।

ये दृश्य दिन का है तो इसलिए ये एक इंगेजमेंट की पार्टी लग रही है।

जो आदमी उसने नीले पीले रंग की शर्ट पहन रखे और वाइट कलर का पैंट पहन रखा है।

यहां पे एक पानी की बॉटल और उसके बगल में एक ग्लास भी दिख रहा है।

मंदिर में शिव जी भगवान विराजित है।

उनके सामने बहोत सारी सीटें भी रखी हुई हैं श्रद्धालु आएं और वहां पे बैठे।

ये एक प्राचीन मंदिर दिखाई दे रहा है या फिर कोई प्राचीन इमारत।

मंदिर बहोत ही पुराना दिख रहा है यहा पे हल्की हल्की घास भी उगी हुई है।

और उसके बगल की तरफ पे हम एक व्यक्ति देख सकते हैं जो अपनी लेग्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं।

बगल की बिल्डिंग मे बहोत सारी लाइटें लगी हुई है जो की बहोत सुंदर दिख रही हैं।

फिर सामने की तरफ दो बाइक सवार खड़े हुए हैं जो शायद पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं।

ये एक टायर बेचने की दुकान लग रही--

जहां पे बहोत तरीके की साइकिल और उनसे जुड़ी हुई सामान यहां पे मौजूद है।

आई थिंक यहां पे किसी की पार्टी होने वाली है किसी की बड्डे पार्टी होने वाले --

चित्र मे हम छे से सात से भी ज्यादा बालक को देख सकते है जोकि बहोत ही ध्यान से अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर रहे है।

कार के जस्ट सामने एक ग्राउंड है यहां पे हरी हुई घास लगी हुई है।

बीच में खड़े हैं उनके कोच जिन्होंने इनको ये नृत्य सिखाया है।

ये दृश्य राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन का है।

अगर हम दृश्य में देखे तो इसमें हमे वो एक दो तीन चार पा पांच हिरन देखने को मिलेंगे।

बगल में हम एक मशीन देख सकते है जो कि ब्लू कलर की है।

वहां पे एक हम औरत देख सकते हैं जो शायद वहां पे पूजा करने के लिए आई है।

इसके ऊपर एक डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें बहुत सारी जानकारियां चिपकाई गई है।

जस्ट उसके ऊपर एक टी_भी है जो कि शायद कैमरे से फिट है।

ये जय जलाराम फास्ट फूड लारी है।

सामने की तरफ पिक्चर है जिसमे ये बताया गया है कि यहां पे क्या क्या मिलता--

ये दृश्य एक शादी समारोह का लग रहा है जिसका अतिथि गेट बहोत ही सुंदर सजा रखा है।

फूलों से रंग बिरंगे फूल का इस्तेमाल किया गया है।

समाने की तरफ हम बहोत सारे मेहमान देख सकते हैं बहुत ही सुंदर वस्त्रों में यहां पर पधारे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे अप्लायंस मिलते हैं जैसे कि ए_सी टी_वी फ्रिज अनेक अनेक कंपनियों के यहां पे ब्रांड अवेलेबल है।

यहां पे जो भी लोग नर्मदा से जुड़े हुए हैं।

उस कि सजावट में उन्होंने रंग बिरंगे बैलून लगा रखे हैं।

ये दृश्य किसी हल्दी का आयोजन किया गया है।

हमें दूल्हा और दुल्हन के लिए एक जगह बना रखी है।